एक गैरेज है गैरेज में एक कार ऊपर टंगा हुआ है एक आदमी वहाँ पे वाश कर रहा है ब्लैक कलर का पाइप है ऊपर छज्जी है जो--

येलो कलर का रेखा बना हुआ है और है और चार पाँच वो है ग्रिल टाइप से बना हुआ है।

कलर का वो लाइट है जो रंग बिरंगी लाइट है और एक पोल है पोल पे जो तार वगैरा गया है उस पे सेटअप ल --

एक घर बना हुआ है घर में दुकान है जो फोर जी कांच पे लगा हुआ है येलो कलर का साइड में दीवार है।

और बुक कुछ बहुत सारे रखा हुआ है नीचे टेबल है और नीचे वो फर्श बना हुआ है।

एक झील है जिसमें नहर है और उसमें ग्रीन व्हाइट कलर का जो पत्थर वगैरा सब है ग्रीन कलर का झाड़ी सब है और--

एक महिला बैठी हुई है जो टेबल पे ग्रीन कलर का है दो तीन आदमी खड़ा है दुकान--

छठ पूजा हो रहा है वहाँ पर बहुत सारे कुछ लड़कियां लड़का खड़ा है और दो तीन पांच छह आदमी नीचे बैठा हुआ और पूजा कर रहा है।

रेड कलर का लिखा हुआ है जगदम्बा मेडिकल हॉल यहाँ पे बहुत सारे नीचे साइकिल लगा हुआ है उसके अंदर बहुत सारे बेंच लगा है जो वाइट कलर और चॉकलेटी कलर का --

येलो में है और नीचे ब्लैक कलर का कुछ फर्श दिख रहा है जो और ऊपर एक खंभा जो है ब्लैक कलर का है।

एक गली में एक घर है बना हुआ है जो एक लंबी सा दीवार बना हुआ है।

ऊपर छत के ऊपर जो पट्टी लगा हुआ जो गुलाबी कलर का है और बहोत सारे गमला में पौधा लगा हुआ--

एक शॉप है वहां पे एक टेबल लगा हुआ है जो गुलाबी कलर का है नीचे फर्श है एक बोर्ड भी लगा हुआ है उसके बगल में एक ग्रिल खुला हुआ है और--

एक प्लेग्राउंड है उसमें कुछ बच्चा फुटबॉल खेल रहा है जिसमें रंग बीरंग का कपड़ा पहना हुआ है ब्लैक कलर का जो नेट बना हुआ है उस--

पीछे बहुत सारा अंधेरा दिख रहा है उसके लिए जो गुलाबी कलर का काफी खूबसूरत नाव है जिसने येलो कलर का ग्रीन कलर का पट्टी लगा हुआ--

बोर्ड के पीछे एक दीवार है जो वाइट का है उसका जो बना हुआ है जो नीला कलर का डिब्बी रखा हुआ है वहाँ पर बहुत सारा कुछ टंगा है।